कुछ लोग बाल कटाने आए हुए है यह एक हेयर सैलून दिख रहा है।

बोर्ड पर शिव हरे फार्मा लिखा हुआ दिख रहा है।

एक शैल में रखे हुए दिख रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।

सामान रखने के लिए टोकरी गुलदस्ते--

सिटी सेंटर सैलून गोपाल गंज लिखा हुआ--

यहां पर ये फैक्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मुझे लग रही है।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

यह रोड के आजू बाजू कही घर भी दिख रहे है।

यहाँ सारी अलग अलग प्रकार की दुकाने हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक पुराना सा--

यहां पर काले कलर मे कुर्सी और टेबल रखे हुए हैं।

यहाँ एक टेबल और दो चेयर दिखाई दे रहीं हैं।

यह नीली कलर की चेयर मुझे दिख रही--